एक जिम का दृश्य सामने में नजर आ रहा है ये जिम --

अगल-बगल गोल्डन पेड़ भी रखे गए है इनको सजाया गया है।

एक छोटा-सा एटीएम है एस बी ई एटीएम --

अउ प्लस बोर्ड भी लगल लगा हुआ हैं इसमे मेरियंत--